पानी नजर आ रहा है इसने काले रंग की टीशर्ट और एक पैंट पहनी हुई है।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

यहाँ एक गाड़ी दिखाई दे रही है। गाड़ी का रंग लाल नजर आ रहा है। नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

लड़का बैठा हुआ है। उसके माथे में कंघा लगा रखा है। पास में एक बच्ची बैठी हुई है। उसने पीले रंग का कपड़ा पेहना हुआ है।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

यहाँ लकडी का दरवाजा नजर आ रहा है उसके पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है जो कि ईटोँ से बना हुवा है।

के पास एक और मकान नजर आ रहा है जिसमें की ईटें दिखाई दे रहे हैं। ईटों का रंग लाल --

यहाँ सोफे की कुर्सियां दिखाई दे रही है जो की लकड़ी के है इसमें नीले रंग का फोम रखा हुआ है।

जमीन में घांस उगी हुई है घांस का रंग हरा और मिट्टी दिखाई दे रही है। मिटटी का रंग भूरा नजर आ रहा है।

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है। एक स्टैडियम नजर आ रहा है। सड़क का रंग काला नजर आ रहा है।